आसमान का कलर व्हाइट ब्लू दिखाई दे रहा है और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं जिनकी दीवारों का कलर रेड दिखाई दे रहा है।